यहाँ पर जा निचा मे पानी भी है और पानी के ऊपर जा आदमी भी है।

पानी भी अच्छा लग रहा- देखने में घर भी है साइड मे जब कि घर भी देखने मे अच्छा लग रहा है। पेड़ को देखलों बिजली का खंभा--

यह वह काफी दिखने में बहुत लाल रंग की थोड़ा है और यहाँ पर पेड़ पौधे है जो की बीच में--

डिज़ाइन भी काफी अच्छा है स्कूल का गेट उट बहुत अच्छे से बोल कर बनाया हैयहाँ पेड़-पौधे भी हैं जो जगह बहुतअच्छा है यहाँ पर एक घर है घर के ऊपर पानी का टंकी भी है जो की डिजाइन बहुत अच्छा है।

सेब है संतरा है और दो-तीन रकम का संतरा पर भी है।

लगाए हुए है दिखने बहुत अच्छे लग रहे है यहाँ बहुत सारे समान हुए है साइड रखे हुए है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है